इस तस्वीर मे एक काली प्लेट मे दो कप कॉफ़ी के भरे हुए रखे दिखाई दे रहे है।

ना पे और पीछे की तरफ कुछ तस्वीरे दिखाई दे रही है। भाड़मे--

--में कत्थई नीला सफेद गुलाबी पीला और भी तरह तरह के कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे है ये कोई कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक हवाई अड्डे के अंदर का की ये तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ बादल और कुछ लोग कुछ हरे हरे पेड़ पार्क और एक हवाई जहाज खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।